कुछ लोग है जो मशीन चला रहे है और एक पर्सन है जो वहां पे कुछ देख रहा है।

बहुत सारी बाइके भी खड़ी हुई है कार भी खड़ी हुई है कुछ लोग हैं जो बाहर मैदान में बैठे हुए हैं।